आई लव हेरीटेज़ । यह हेरीटेज़ है। और यहा पर एक गार्डेन सा दिख रहा है। पीछे केले का एक पेड़ भी दिख रहा है।

यहा पर बहुत सी दुकान दिखाई दे रही हे यहा पर कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती है एक बड़ा सा झुला दिखाई दे रहा है

तस्वीर भी दिखाई दे रही है। कुछ लड़कियां देख रही है इन्हे।

यहाँ एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा हैं बहुत से लाइट दिख रहे हैं इसमें खरीदने योग्य बहुत सी सामग्री दिख रही है इसमें।

यहाँ पर बहुत सारे फोटो फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं एक घोड़ा भी दिखाई दे रहा हैं और फोटो में बहुत अलग --